के अंदर एक गाड़ी दिखाई दे रही--

ऐसा टेबल रखा हुआ है अलमारी है।

सामने पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है।

सामने एक बेंच पड़ा हुआ है उसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

दोनों खंभे के पास वाइट कलर के फूल लगे है।

सामने तीन सोफा दिखाई दे जिस पे तकिया भी रखी है।

पीछे एक ब्लैक कलर की टेबल दिखाई दे रही है।

सामने पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है।

एक पुलिस वाला है और बहोत सारे आदमी हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जिस पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

तौलिया भी दिखाई दे रही पंखा भी लगा हुआ है घड़ी भी लगी हुई है और गुब्बाड़े भी लगे हुए हैं मेज भी दिखाई दे रहा है।

यह बहोत बड़ा सा एक व्हाइट कलर का स्कूल की तरह कुछ दिखाई दे रहा है।

जीने भी दिखाई दे रहे उसके उस तरफ पेड़ भी बड़ा सा दिखाई दे रहा जमीन भी दिखाई दे रही है।

और नीचे डेस्क भी लगी हुई है और बच्चे कुछ बना भी रहे है और भी बहोत सारी चीज है।

और बहोत सारे इस तरफ आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी गुलाबी टी-शर्ट पहन कर बैठा हुआ है।

सामने कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

दो तीन पंखे भी दिखाई दे रहे व्हाइट कलर की लाइट भी लगी हुई--

पोस्टर भी लगे हुए हैं और पन्नी में भी कुछ रखे हुए इस तरफ भी चड्डे बहोत सारे टंगे हुए है नीचे टाइल्स लगी है।

पीली व्हाइट कलर की टोपी की तरह कुछ रखी दिखाई दे रही है।

उसके उस तरफ पेड़ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

अभी बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गमले बहुत सारे रखे हुए हैं और छोटे बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं उसके इस तरफ बोर्ड भी लगा हुआ है लकड़ी का।

दो तकिया भी रखी हुई हैं दो कम्बल भी दिखाई दे रहे उसके इस तरफ स्टूल रखा हुआ है।

दो और बहोत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं एक बच्चा नीचे बैठकर अपनी झूमर चिपका रहा है दूसरा बच्चा खड़े होकर काट रहा--

और इस तरफ जाली की खिड़की भी बहुत बड़ी सी लगी हुई है उसके पीछे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं क्रीम और लाल कलर का पेंट है।

और ब्लैक कलर का मेज भी दिखाई दे उसके उस तरफ काला और एक क्रीम कलर का जूता भी दिखाई दे रहा--

सामने बहोत बड़ी सी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

उसके इस तरफ जीने भी दिखाई दे रही हैं टाइल्स लगी हुई उसकी चारों तरफ रेलिंग भी लगी हुई है और उस तरफ भी घास लगी हुई है।

उसके सामने घंटा दिखाई दे रहा है और उसके उस तरफ चार पहिया दो दिखाई दे रही--

पीले और लाल कलर के गमले दिखाई दे गमले में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए एक कार भी जाते हुए दिखाई दे--

एक आदमी और जाता हुआ दिखाई दे रहा और कार भी बोहोत सारी दिखाई दे रही हैं।

सामने एक आदमी बैठा योगा कर शायद ये लड़की भागते हुए दिखाई दे रही--

लड़का खड़ा है एक आदमी बैठा हुआ है और एक खंभा भी दिखाई दे--

घास भी लगी हुई है चारों तरफ रेलिंग भी लगी हुई--

एक पैदल चल रहा है।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

सामने दो गाड़ी भी खड़े हैं।

ढाल जैसी बनी है उसपे लोहे की रेलिंग --

उसपे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

गमले रखे हुए पौधों के बीच में।

उसी के बगल में हेल्प डेस्क लिखा है।

अंदर की तरफ एक लोग दिखाई दे रहा है।

दीवार पे लिखा है द हाउस इक्कीस।

सामने दो ताजमहल जैसे दिखाई दे रहे

सामने दो बेसिन दिखाई दे रही --

और भी दो चीजें दिखाई दे रही दो--

औरत एक आदमी उसी के जस्ट एक आदमी और बैठा है।

कलरदार लोहे का दरवाजा लगा है।